यहाँ एक मूर्तिकार मूर्ति है जहाँ पर पूजा सब होने होने जा रहा है। यहाँ पर पूजा नही हुआ है लेकिन मोमबत्ती सब जल रहा है। बहुत अच्छा देखने मे लग रहा है। मूर्ति बहुत अच्छा है। वहाँ पे व्हाइट कलर का एक पंखा है यहाँ पे ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुए है --

यहाँ एगो बच्चा सबका खिलौने है जहाँ बच्चा आते हैं और खेलते हैं जैसे की दो ठो यहाँ पर खिलौना और मकान सब है। बगल में पौधे सब हैं आदमी भी है आदमी सब भी है आदमी-औरत सब है।